कुछ लोग बैठे हुए हैं स्टेशन पर और एक मालगाड़ी जा रही है।

पंप के नीचे मैदान सीमेंट से बनी हुई ईंटो से सजा हुआ है।